जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं। यहां हमारे सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में हमें एक--

रिश्तेदारों के साथ अपने भाईयों दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं।

दूसरे पिक्चर की अगर बात करें तो यहां हमारे सामने बस स्टैंड --

अपने आगंतुक स्थान पर पहुंचे सवारी के इंतजार में खड़ी हुई बस है।

दूसरे पिक्चर की अगर बात करें तो हमारे सामने एक मंदिर का यहां दृश्य सामने आ जाता है।

देख देखते ही बनती है क्योंकि एक बहोत ही महंगी कार की पिक्चर है।

और इस कार के सीरीज की बात करें तो यह ऑडी ए फोर है हम ऑडी को इसके--

हमें एक दो बच्चे स्कूल के इस गलियारे में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं।

खुदाई करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र जो ज्यादातर किसान भाई हमारे--

ऐसे ही यहां पे यात्री आकर इस बेड पे पूरी तरीके से बैठ जाएंगे।

इन घासों में लोग आपस में बैठ सकते हैं बातें कर सकते हैं।

यह चाहे तो गाय बकरियों को छोड़कर घास को खीला भी सकते--

ये बोर्ड देख रहे हैं तो समझ नहीं आ रही है लेकिन लग रहा है कि ये होटल बहुत बड़ा है।